इस रास्ते में मुझे कोई आता-जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

मेरे सामने एक तस्वीर दिखाई जा रही है जोकि मुझे एक मेले की तस्वीर लग रही है। यहाँ पर मुझे बहुत ही बड़े-बड़े झूले देखने को मिल रहे हैं।

और साइड में मुझे एक बड़ा सा डस्टबिन देखने को मिल रही है| जहां पर बहोत ही रात हो चुका है| यहां पर लाइट एक व्हाइट कलर क जलता हुआ न --

और उसके साइड में मुझे नीचे बैठकर फील्डिंग करते हुए दिख --

और उ इधर पर मुझे प्लेटफार्म नंबर वन और इस साइड में मुझे प्लेटफार्म नंबर टू भी देखने को मिल रहा है| जहां पर यात्रिगड़ पूड़ा ट्रेन को देख रहे हैं।

उनके अगल-बगल डांस करते हुए लग रहे हैं और स्टेज को बहौत ही --

आलू लहसुन और बहुत ही सारे चीज देखने को मिल रहे हैबाहर में मुझे आलू प्याज और लहसुन देखने को मिल रहा है।

जिसमें कि मुझे ए.टी.एम. का स्लिप फेंका हुआ नजर आ रहा है और उसके बगल में मुझे एक झाडू --